नमस्कार celldesigner में create and edit components के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगें : एक पहले से सेव की गई xml फ़ाइल को draw area में खोलना
एक compartment में : आकृति आकार रंग एवं border की मोटाई को बदलना
celldesigner में multiple files बनाना species की पहचान बदलना
हम निम्न भी सीखेंगें species को cut copy एवं paste कैसे करते हैं species के startpoint एवं endpoint के बारे में
species को कैसे सक्रिय करते हैं एवं कैसे रंग बदलते हैं एक reaction की विशेषताओं को कैसे बदलते हैं file को कैसे बंद करते हैं
यहाँ मैं ubuntu linux os version 1404 celldesigner version 43 java version 17 का प्रयोग कर रही हूँ
इस tutorial पर आगे बढ़ने के लिए आपको स्नातक स्तर की biochemistry एवं celldesigner interface से परिचित होना चाहिए
यदि ऐसा नहीं है तो सम्बंधित celldesigner tutorials के लिए कृपया हमारी website www spokentutorial org पर जाएँ
शिक्षार्थी कृपया ध्यान दें: इस शृंखला के पिछले कुछ tutorials windows os पर बनाए गए थे
हालाँकि यहाँ से यह शृंखला ubuntu linux os पर पूरी की जाएगी
celldesigner में create and edit components पर आगे बढ़ते हैं
एक साथ ctrl + alt + t कीज़ दबाकर terminal खोलें
अब/runcelldesigner43 type करें एवं enter दबाएँ
अब celldesigner आपकी screen पर खुल गया है
create and edit फ़ाइल खोलें जो हमने पहले बनाई थी
तो file पर और फिर open पर click करें
screen पर open named एक dialog box खुल जाता है
यहाँ हमें folders label के अंदर folder का चयन करना है
file label में create _ and _ edit xml फ़ाइल पर click करें और फिर ok पर doubleclick करें
हमारी फ़ाइल create _ and _ edit xml अब draw area में खुल गई है
compartment चुनें main menu bar में component पर जाएँ
नीचे scroll करें और change to oval चुनें
draw area पर हमारे पास अब एक oval compartment है
रंग या मोटाई बदलने के लिए main menu bar में component पर जाएं
change color & shape विकल्प पर click करें
वैकल्पिक रूप से compartment की boundary पर right click करें तथा change color & shape विकल्प चुनें
screen पर change color & shape named एक dialog box खुल जाता है
एक अपेक्षाकृत पतली boundary line के लिए membrane thickness को 12 से घटाकर 8 या उससे कम करें
रंग बदलने के लिए color panel पर जाएं
color panel में एक handle जैसे pointer के साथ एक color wheel है
pointer को click एवं hold करें और वांछित रंग का चयन करने के लिए घुमाएँ
सभी संशोधन कर लेने के बाद apply पर click करें और फिर ok पर click करें
reaction toolbar पर अपने आप विभिन्न compartments draw करने के अन्य विकल्प खोजें
अब हम species की पहचान बदलने का तरीक़ा सीखेंगें
तो सर्वप्रथम हम ctrl + n दबाकर एक नई window खोलेंगे
file को एक name माना change species देते हैं
हम चौड़ाई एवं ऊंचाई को default रखेंगे और ok button पर click करें
अब toolbar से generic protein के icon पर click करें draw area पर click करें
dialog box में pectin टाइप करें और ok button पर click करें
अब generic protein pectin पर right click करें
और change identity विकल्प पर click करें
change identity of the species named एक dialog box screen पर खुल जाता है
class box में down arrow पर click करें
drop down menu में से कोई एक विकल्प उदाहरण के लिए माना simple moleculeचुनें
अब name box में इस simple molecule को name दें
इसे fructose कहें और apply button पर click करें
देखें कि हमारा protein pectin अब fructose named एक simple molecule में बदल गया है
अब cut copy और paste करना सीखते हैं
मैं fructose का ही प्रयोग करूंगी जो draw area में पहले ही मौजूद है
speciesको cut करने के लिए पहले species fructose पर click करें
edit menu पर जाएं नीचे scroll करें और cut पर click करें
यहां ध्यान दें कि cut key लिए shortcut की key ctrl + x है
species fructose cut की जा चुकी है
स्पिशीज़ को paste करने के लिए edit menu पर वापस जाएं नीचे scroll करें to paste पर click करें
यहां ध्यान दें कि paste के लिए shortcut key ctrl + v है
species fructose draw area पर वापस दिखाई देने लगता है
species की copy बनाने के लिए main menu bar पर edit पर जाएं
copy पर click करें
यहां ध्यान दें कि copy के लिए shortcut ctrl + c है copy पर click करें draw area पर click करें
इस बार paste करने के लिए ctrl + v दबाते हैं
हमने अब fructose की एक copy को draw area पर पेस्ट कर लिया है
किसी भी कार्य को अनto करने के लिए ctrl + z दबाएं तथा रीto करने के लिए ctrl + yदबाएं
हालांकि इनके उपयोग की कुछ सीमाएं हैं
fructose molecules को drag करके draw area में एक तरफ move करते हैं
ऐसा करने के लिए fructose पर click करें to इसे वांछित स्थिति तक drag करें
फिर हम सीखेंगे startpoint एवं endpoint speciesक्या है और species को कैसे activate करते हैं
इसके लिए मैंने पहले ही 2 generic proteins के बीच एक state transition reaction ड्रा कर ली है
मैंने उन्हें protein 1 एवं protein 2 named दिए हैं
याद करें हम पहले ही reaction draw करना सीख चुके हैं
यदि आप नहीं जानते तो इस श्रृंखला के पिछले tutorials देखें आगे बढ़ते हैं
इस reaction में start point protein 1 है और end point protein 2 है
species को activate करने के लिए एक species पर click करें जो एक reaction का endpoint है
हमारी स्थिति में यह protein 2 है
अतः protein 2 पर click करें और keyboard पर a दबाएं
अब ctrl + z की key दबाकर इस परिवर्तन को अनडू करें
वैकल्पिक रूप से protein 2 पर click करें
फिर main menu bar में component पर जाएं
नीचे scroll करें और set active पर click करें
ध्यान दें कि activated species डैश्ड line से लिपटी होती हैं
अब species protein 2 का रंग बदलते हैं
तो इस पर right click करें और फिर change color and shape पर click करें
जैसाकि हमने पहले देखा color panel में एक color wheel है
वांछित रंग चुनने के लिए pointer पर click करें तथा घुमाएं
फिर apply और ok पर click करें
species में हुए रंग परिवर्तनों को देखें
अब हम एक reaction की विशेषताओं को बदलना सीखेंगे
draw area पर मौजूद अपनी state transition reaction पर वापस आते हैं
दो species के बीच reaction arrow पर right click करें
अब change identity विकल्प चुनें
change properties of the reaction नामक एक dialog box खुलता है
name box में reaction का name माना reaction1 type करें
type box के dropdown में आवश्यक reaction माना transcription चुनें ok पर click करें
देखें कि draw area पर reaction बदल गई है
हमें वह name नहीं दिखता जो हमने draw area में reaction arrow पर दिया था
चिंता ना करें हम आने वाले tutorials में इसके बारे में सीखेंगे
एक बार फिर से reaction arrow पर right click करें तथा change identity विकल्प पर click करें
यदि यह एक reversible reaction है तो true विकल्प चुनें तथा ok पर click करें
अब आप देखेंगे कि reaction reversed हो गई है
celldesigner से बाहर निकलने के लिए file पर click करें to exit विकल्प चुनें
वैकल्पिक रूप से आप ctrl q दबा सकते हैं
screen पर यह पूछता हुआ confirmation नामक एक dialog box दिखाई देता है कि क्या मैं परिवर्तनों को सेव करना चाहती हूँ
yes पर click करें और ok button पर double click करें
यह कहता है कि file संशोधित हो चुकी है
save the changes yes पर क्लिक करें
सारांशित करते हैं: इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा:
ड्रा एरिया में पहले से सेव की गई xml फाइल खोलना
compartment की आकृति आकार रंग एवं बॉर्डर की मोटाई को बदलना
celldesigner में मल्टीपल फाइल बनाना तथा पहचान बदलना
और species को कट कॉपी एवं पेस्ट करना
हमने निम्न भी सीखा: species के startpoint एवं endpoint के बारे में
speciesको एक्टिवेट करना speciesका रंग बदलना reaction की properties बदलना तथा file बंद करना
आपके असाइनमेंट के लिए: एक complex बनाएँ तथा complexके अंदर एक species रखें
असाइनमेंट 2: टूल बार के बारे में जाने तथा पता लगाएं कि एक रिएक्शन में एक reactant एवं एक product को कैसे जोड़ते हैं
आपका पूर्ण असाइनमेंट ऐसा दिखना चाहिए
आपका पहला असाइनमेंट ऐसा दिखना चाहिए: एक complex तथा complex के अंदर रखी गई species
असाइनमेंट 2 ऐसा देखना चाहिए: एक reactant एवं एक product के साथ statetransition reaction
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में
इस लिंक पर दिया गया वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है तथा ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान करती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है
यह ट्यूटोरियल इं अमित कुमार द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद